एक के ऊपर एक रखकर अटैच किए गए--

यहां पे बहोत सारे लोग आए हुए हैं यह--

कुछ पीले रंग का डेकोरेशन किया गया है कुछ पंखे लगाए गए हैं।

यह एक कोई कार्यालय है यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

साइनबोर्ड लगा हुआ हैं यानि बैनर लगा हुआ है।

यहां पे बहोत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है--

यहां काफी प पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक पार्टी वेन्यू है यहां पे बहुत सारे कार्पेट बिछाए गए हैं और--

बहोत ही अच्छी बैंच बनाई गई है जिनका कलरफुल किया गया हैं ग्रीन और--

जो काफी सुंदर दिख रहा है।